यहाँ पर कुछ घड़े बनाते हुए दिखाई दे रहे हैदो लड़के है जो एक लड़का ऊपर सीढ़ी जैसा मे चढ़ा हुआ है ।

यहाँ पर पानी भरा हुआ है और एक नाओ जैसा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक-दो अअ स्कूल जैसा देखाई दे रहा हे स्कूल और बॉउंड्री किया हुआ हे कुछ हरे-हरे छोट-छोटे पौधे लगाए हुए हैं हरा-हरा पूरा --

घास लगा हुआ है और कुछ रूम जैसा बना है जो कुछ पुराना लग रहा है कुछ नया लग रहा है एक रूम --

और बहुत सारे व्यक्ति उधर भी दिखाई दे रहे है ।

और कुछ फूल के पौधे भी लगे हुए है नीचे टेबल चेयर रखे हुए है ।

यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारे कुछ कुछ रखे हुए हैं बोरिया में और --

यहाँ पर एक हॉल जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे जिम करने की कुछ मशीने रखी हुई है।

और दरवाजा बना हुआ हैं |खिडक़ीयों जैसा बना हुआ है अगल-बगल मे और कुछ पेड़ लगे हुए है हरा और काला दिख रहा है ।

यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है जो ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना है और चश्मा लगाया हुआ है।

यहाँ पर एक खिड़की दिख रहा है खिड़की में पर्दा लगा हुआ है यहाँ पे एक बेड है बेड के ऊपर कुछ हड्डियां रखी हुई हैं।